और कुछ लाल कलर की अलमारियां हैं।

इस पिक्चर में ये सामने की तरफ एक तालाब है।

सामने पानी की बोतल रखी है और कैचप रखी है बहोत सारी।

इस पिक्चर में बहुत सारे आदमी हैं औरत हैं।

यहां कोई दुकान जैसा दिख रहा है।

ये डिजाइन में लगा रखे हैं गिलास।

और नीचे एक टेबल सी है।

ये बहोत सारी गिटार रखे हैं।